यह सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा डांस बाद में कुछ डांस प्रतियोगिता हो रहा लोग --

इ मोर जब अपन पंख के फैलावे ये --